एक रोड दिखाई दे रही है रोड पे एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है स्टील का खंबा दिखाई दे रहा है।

एक बकेट दिखाई दे रह है एक छाता दिखाई दे रहा है एक साइकिल दिखाई दे रही है एक बोरी दिखाई दे रही है।